देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है।

टाइल्स भी अच्छा लगा है। कलर उसके अच्छे हैं। बने हैं।

ये हमको लग रहा है मेला लगा हुआ है। काफी यहाँ सजावट वगैरह हुई हैं। झूला वगैरह सब सब लोग यहाँ मेला करने आये --

इ भारती स्टेट बैंक है बाजार में काफी अच्छा लग रहा है। काफी यहाँ भीड़ होता है।

अब फूल वगैरह का काम चल --

यहाँ पे होटल वगैरह की भी सुविधा सब है चाहे लोग रहें।

ये वाटर पार्क ही है जहाँ तक हमारा समझ में आ रहा है। हमारे समझ में आ रहा है।

रोड है और गाड़ियाँ खड़ी हैं। पैड भी लगा हुआ है और पीछे मार्केट दिख रहा है। बजार हो सकता है।

फील्ड है। काफी बड़ा फील्ड दिख रहा है।

ऐसा देखने में लग रहा है।

काफी तिरपाल ओरपाल लगाये हैं। सब्जी-उब्जी बेचने में फल उल बेच रहे है सब्जी बेच रहे है। प्याज आलू टमाटर यही सब --